अरे चचा यहाँ पर हर तरफ हल्का हल्का घास है हलकी हलकी मिट्टी है और तो कुछ तो कूछ किस जगह पर तो फुल घास है और यहाँ पर एक --

यहाँ पर एक अलमारी और उसी सेम टू सेम जैसा सोफा पड़ा है।

फैली हुई है और फर्श है।

यहाँ पर तीन बच्चे हैं जो डाँक की पोज़िशन में--

दो टीचर्स भी बैठे हैं जो बच्चों का काम चेक कर रहे हैं सामने एक गेट खुला पड़ा यहां पे कुछ खिड़कियां वगैर लगे हैं कुछ ब्लैकबोर्ड भी टंगा हुआ है।

यहाँ पर दो तीन चेयर पड़ी है एक आदमी --

और फिर पल्लेटे पड़े हुए हैं यहाँ पे और भी सामान पड़ा है बिखरा सा पड़ा है।

बॉस दिख रही हैं और अंदर मछलियाँ वगैरा कोई मछली वाला डब्बा शायद जिसमें अंदर पानी ही पानी पेड़ पौधे छोटे मोटे बोफ बॉलें मछलियाँ--

ये है एक अ रूम है जिसमें कुछ कपड़े ऐसे फेंके पड़े हैं त यहाँ पर सामने भी कुछ लाइटे सी जैसे य यहाँ ऊपर दीवारों पर भी कुछ--

उप्पर अलग-अ टाइप के पेर पौधे लगे हुए हैं हर गमले में ए दुसरे के उप्पर लगाया गत्ता यहाँ पर निच्चे भी हरी हरी घाँस कुछ फेली कर रही है।

यहाँ पर भी एक आदमी है जो ऐसी गुफा में बढ़ने की कोशिश कर रहे है यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है जिसमें गुफा का--

बड़े बड़े यहाँ पर सभी टैंक होने हैं जिसे अलग अलग पैकिंग में पैक किया हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी इच्चे पे बैठा है जो दो ऐसे लोगों को देख रहा है त यहाँ पर पीछे गाड़ीयाँ वग़ैरा बाइकें वग़ैरा सब कुछ नजर आ रहे हैं चलते हुए--

यहाँ पर फिर दो आदमी इक्कठे कही जा रहे हैं लेकिन कई जगह पे इनके बहाँ मुंढों पर बैग टाँग रखे हैं और यहाँ पर--

यहाँ पर थोआ-थोड़ा पानी पानी फैलना पड़ा तो ऊपर वहाँ पे एक शर्ट --

यहां पर गाड़ियों का काम चल रहा है जो दो आदमी इकट्ठे खड़े हो कर सेम कलर की ड्रेस पहन सके तो वो गलती से गाड़ी को चेक कर रही हैं।

यहाँ पर एक दो तीन बाइक और एस स्कूटी खड़ा था यहाँ पर जो सड़क काफ़ी दिख रहा यहाँ पर एक अंकल और एक लड़की की --

लड़की के खड़े होने के सिस दिख रहे है दिख रहा है और यहाँ पर कु लड़के लकड़ी सिस किया हुआ है।

यहाँ पर हर तरफ़ जाल जो लगे उस तरफ बीच में सड़क दिख रही है पिच्छे वहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है।

कोई तो यहाँ पे बिकने ऐसे बॉक्सेस के डब्बे से बने हुए हैं कोइ यहाँ पे तो स्मेल आ रहे हैं।